चित्र में मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और ऊपर खड़ी हुई--

चित्र में मुझे कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा चित्र में मुझे कई सारे कपड़े --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

दिख रही है चित्र में मुझे एक व्यक्ति दिखाई--